जिसके बाहर दो सफ़ेद और पीले तकथा का में यु.पी.एस.सी. नोट्स और आई.जी.एन.ओ.यु. बुक्स लिखे हुए है।

यह चित्र में हमें एक फ्यूल पंप देखने मिल रहा है।

वहां पे सफेद रंग में व्यायामशाला और अंग्रेजी भाषा में ओपन जिम लिखा हुआ है।

सब्जियों में टमाटर फुल-गोबी बैंगन भिंडी बहोत सारी रखी हुई हैं।

बोहोत दूर बहुत ही बड़ा सफेद रंग का ईमारत देखने को मिल रहा है।

जिसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में द सिटी कैफे लिखा हुआ है।